छोटे छोटे पेड़ पौधे भी है और आगे थोडा थोडा बहुत दूर में --

के आगे कुछ आदमी दिख रही है जो की बिलकुल ट्रेन से उतरकर आ रही है और उधर एक --

है उसपे घास उगी है और इधर एक पोल है पोल से तार पास हुआ है।

एक आदमी बैठे हुए है और उधर मकान दिख रही है और इधर एक गढ्ढा दिख रही है उधर ढेर सारे आदमी दिख रही है।

और दिवार दिया हुआ है।

यहापे एक बिल्डिंग दिख रही है और बिल्डिंग के आगे एक लड़का एक बाइक लेकर खड़ा है ज्यों पीछे ब्लॅक --